सामान और पार्सेल्स का काम चलता है ये सिटी टाइप लग रहा है सिटी के अन्दर लगता है और ये इसमें कई प्रकार की मारुतिया भी है।

यहाँ पर तीन कुत्ते है यहाँ पर साफ़ सफाई है यहाँ पर आदमी बेठे हुए है यहाँ पर दुकान है और वहाँ से लोग आ रहे है यहाँ पर ट्रेन आती है लोग बैठते है और यहाँ से जाते है।

ये पोऊच है इसमें गेरने के लिए इसको मिक्स करके पीया जाता है दो चम्मच है साथ में और ये देखने में बहुत सही है इसके पास एक चाबी धरी है मीनु धरा हुवा है।

यहाँ पर आदमी गेट पर खड़े हुए है और जो अन्दर जा रहे है उसके आस पास का झंडा भी है --

यहाँ पर बच्चे है ये यहाँ कोई ऑफिस है डांस का जिसकी ओपनिंग हो रही है और यहाँ पर बैठने--

यह नाई की दुकान है नाई की दुकान में आदमी है ये इसकी दुकान है यहाँ पे बैठेने का सामान है यहाँ पे दो कुर्सियां है यहाँ पे दाढ़ी वादी करने का काम और कटिंग वटिंग कर देते है यहा पे पंखा है।

इसमें आदमी है जो इस कोई कंपनी है कंपनी में आया है और यहाँ पर इसके पास सूट है सूट को प्रेस कराने आया हुआ है।

मुँह पे लगाया जाता है नहाने के लिए भी उपयोग करते है साबुन भी मिलते साथ में इसको मुँह पे भी लगया जाता है इससे चेहरा साफ हो जाता है और ये बढ़िया लग रही है ये शानदार है।

किना छे यह डाक विभाग का है यहा पे लोग आते है और इसमें पोस्ट करते है यहा से डाक डाक